और यहां पर इस बोर्ड में लिखा हुआ है कि यहां सभी प्रकार के फल फूल लड़कियों के लकड़ियों के पोंधे उपलब्ध है और बहोत सारे पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

यह एक शोरूम है और शोरूम में बाइक रखी हुई है बहोत सारी और बाइक नीचे टाइल्स लगे हुए हैं।

जो लाल कपड़े पहने हुए हैं और ब्लैक कलर का स्टोल डाले हुए है और इस बिल्डिंग में बहोत सारी खिड़कियां बने हुए है बहोत सारे लोग फर्श पर खड़े हुए हैं।

यहां बहोत सारी लड़कियां हैं और सभी लड़कियों के बीच में एक लड़का है और सभी लड़कियां लाल कलर का दुपट्टा पहने है सफेद कलर और फ्रॉक है।

यहां पर मुझे बहोत सारी स्कूटी रखीं दिख रही है और एक बाइक भी है और यहां पर सामने मुझे--

ये गौशाला है और इस गौशाला टीन शेड से बनी हुई है और यहां बहोत सारी मुझे गाय दिख रही है।

मुझे सामने एक दीवाल दिख रही है और एक नीली टी-शर्ट पहने हुए आदमी चल रहा है एक ऑटो रिक्शा है एक लाल टी-शर्ट पहने हुआ ऑटो चला रहा है।